यह एक बहुत सुंदर शादी का मोल है।

और बहुत सी लाइटें भी लग रही है।

यह एक बहुत सुंदर खेलने का प्लॉट है।

और पीछे बहुत से पेड़ भी खड़े हुए हैं।

यह एक बहुत सुंदर शादी का मोहोल है।

इसमें बहोत सी कुर्सियां रखी हुई है।

यह एक बहुत सुंदर कपड़ों की दुकान है।

यह एक बहुत सुन्दर मन्दिर है।

और मंदिर के अंदर सफेद रंग की टाइल भी लगा रखी है।

कुछ बसें लाल है और एक बस हरी भी है।

और एक आदमी खड़ा हुआ है।

और सभी ने अपना हाथ ड्राइंग पर रखा हुआ है।

और सभी दो उंगली दिखा रहे हैं।

और सामने एक पुल भी बना हुआ है।

और बहुत से आदमी खड़े हुए हैं।

और आदमी ने जूत्ते पहने हुए हैं।

यह एक बहुत सुंदर कंप्यूटर की दुकान है।

इसके सामने एक मेज पर कंप्यूटर रखा हुआ है।

यह एक बहुत सुंदर दुकान है।

इस रोड के सामने बहुत से ट्रक जा रहे हैं।

और सभी ट्रक लाइन से जा रहे हैं।

और नीचे सफेद कलर की टाइल भी बिछी हुई है।

यह एक बहुत सुंदर मंदिर है।

और बहुत सी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।